किसी बड़े से किसी बड़े से पार्क का एक नदी का किनारा के किनारो के साथ एक बड़ा सा पार्क जहाँ पे कुछ बच्चे के खेलने के लिए झूले स्लाइडिंग स्लाइडिंग लगे हुए है जहाँ पे एक बच्चा स्लाइड करने का इन इंतजार में खड़ा है।

इस शहर से दूर मैदान में शहर से दूर मैदान में लगा हुआ एक डिज्नीलैंड का मेला जहाँ पे दो चार बड़े बड़े झूले हैं |

ऊ पड़ी पास में पड़ा एक पास घर मा किसी महौले का एक जनरल स्टोर जहाँ पे कुछ जरूरत की सामाने है कुछ पानी का बोतल कुछ ठंड अ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखे हुए है साथ में कस्टमर को लुभाने के लिए कुछ सामान का भी प्रदर्शित किया गया है |

टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी जहाँ पे एक बड़े से पत्थर को इधर से उधर ले जाने के लिए अपने खुद के द्वारा बनाई हुई गाड़ीयों का इस्तेमाल करता कुछ कारीगर।